इमारत के सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ कुछ कैरेट भी रखे हुए हैं।

सामने की तरफ कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

कुछ भक्त इस मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इमारत में अंदर की तरफ बिजली का तार जाता हुआ दिख रहा है।

जिम में कसरत करने के लिए बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं।

इमारत के सामने बहुत सारे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

सामने की तरफ एक टावर नुमा बिल्डिंग भी है।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

इमारत के आस पास बहुत सारे पौधे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में किसी नदी का दृश्य दिखाया गया है।

पहाड़ पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो में किसी लैब का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की दीवार पर एक घड़ी भी टंगी हुई है।

कमरे को झूमर व झालर से सजाया गया है।

सामने की तरफ कुछ भक्त भी दर्शन करते हुए दिख रहे हैं।

मंदिर के गेट पर बल्ब भी जल रहे हैं।

इस फोटो में किसी दुकान की इमारत दिखाई गई है।

दुकान के बाहर गमलों में पेड़ रखे हुए हैं।

सामने की तरफ एक घड़ी दिख रही है।

इस फोटो में किसी पार्क का दृश्य दिखाया गया है।

नर्सरी में बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक बस अड्डा दिखाया गया है।

बस अड्डे के अंदर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी है।

सामने की तरफ कुछ ट्रेडमिल रखी दिख रही हैं।